इस चित्र में एक दुकान को दर्शाया गया है जो दुकान का नाम रिधि सीधी है ये एक वस्त्र का दुकान है सामने मोटरसाइकिल साइकिल सब रखा हुआ है दुकान के अंदर तीन पुतला रखा हुआ है।

वस्त्रयों का दुकान है श्याम किसी आदमी का नाम से दिया गया है इ दुकान का दो शटर बंद है एक शटर खुला हुआ है सामने एक खाली सड़क दिखाया गया है और दुकान को दर्शाया गया हैं।

वहाॅं पे पहाड़ का चोटी तक दिख रहा है हर तरफ हाली है और हवा है एक सुनसान सा सड़क है जहाॅं पे कोई लोग नहीं है।